इस तस्वीर में हमें एक रोड नज़र आ रही है जिसके ऊपर हमें वाइट कलर की कार कार नज़र आ रही है।

पानी बह रहा है जहाँ पर बच्चे नहा रहे हैं।

इस तस्वीर में हमें पुरानी इमारतों जैसी एक--

उसके बाहर हमें बहुत सारे मोमबत्तियां जलते हुए दिखाई दे रही हैं।

सामने हमें एक लड़का जाते हुए भी नज़र आ रहा है।

इस तस्वीर में हमें एक ऑफिस नज़र आ रहा है।

जो कि बाइक रिपेयरिंग की दुकान है।

इसके बीच एक बच्चा खड़ा हुआ है।

इस चित्र में हमें बहुत बड़ा तालाब नजर आ रहा है।

इस चित्र में हमें एक पेट्रोल पंप नजर आ रही है जो कि वाइट कलर की है।

वहाँ पर कुछ लोग पेट्रोल डलवा रहे हैं।

एक व्यक्ति जाता हुआ नजर आ रहा है जो कि रेड कलर की टी_शर्ट में है।

पीछे हमें एक मल्टी दिखाई दे रही है।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

और वहाँ बहुत सारे कप रखे हुए हैं यहाँ एक बाह बाहर बच्चा भी खड़ा हुआ है।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

यहां पर बुजुर्ग और जवान सभी एक लाइन में खड़े हुए है।

इस चित्र में हमें एक बहोत बड़ी डांस क्लास दिख रही है जहां पर दो लड़के एक सोफे पर बैठे हुए--

इसके बाहर दो घर भी दिखाई दे रहे हैं उसके बाहर यहाँ पर बहुत सारे पेड़-पौधे लगे हुए हैं।

टेबल लगी हुई है जहाँ पर खाने की तैयारी हो रही है।

और सामने बहुत सारे लोग खड़े होकर उनको सुन रहे हैं।

और उसके अंदर हमें बोट नजर आ रही है।